पहाड़ देख पा रहें जो की रेड कलर के इसके नीचे हम लोग कुछ टूलबॉक्स देख पा रहें ए--

एक बैनर जैसा कुछ दिख पा रहे हैं का दवाई चदरा से बना हुआ हैं।

अब हम लोग तीन महिला को बैठे हुए देख पा जिनमें से तीनों ने--

रेड कलर की साड़ी पड़ी है। एक ने रेड कलर का ब्लाउज और एक ने ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना है।

लाल ग्रीन ब्ल्यू कलर से रंगे हुए है यहां पे हम लोग सामने मे एक झंडा--

और एक पीछे एक हम लोग बिल्डिंग देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के दो गो पेड़ देख पा रहे हैं।

ब्लैक देख पा रहे हैं बार बार इसलिए हम लोग तीन गो लाइट देख पा रहे हैं।

पीछे हम लोग एक चेयर देख पा रहे हैं जो कि ब्लैक कलर का स्टील से बना हुआ है हम लोग बेसिन देख पा रहे हैं जो कि ब्लू कलर का पीछे का जो दीवार देख पा रहे हैं वो ब्लैक कलर का देख पा रहे हैं इधर वाला --

इस फोटो के अंदर हमलोग एक पेट्रोल पंप देख पा रहे हैं जो की--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

हम दो व्यक्ति देख पा रहे जिनमें से एक ने ब्लू कलर का गंजी पहना और ब्लैक कलर का पैंट हुआ--

ऊपर हम देख पा रहे हैं एक ट्यूबलाइट दिख पा रहे हैं यहां पर हम लोग ये--

ये चार व्यक्ति को जिनमें से एक ने ग्रीन कलर का गंजी पहना है एक ने येलो कलर ग्रीन पहने हुआ है एक ने--

जात धर्म का प्र सिंबल बना हुआ है फिर हम लोग लोहे का बना हुआ है मैट दिख पा रहे हैं टब देख--

साइड में हमलोग एक दरवाजा देख पा जो की लोहे का बना हुआ है और ब--

जो कि यहां पर अनुकूल ठाकुर का यहां पर तीन का फोटो देख पा रहे हैं हम लोग।

पीला कलर का कपरा पहना हुआ है। एक ने ग्रीन कलर का एक ने पिंक कलर का। यहां का जो नीचे का फ्लोर है वो व्हाइट कलर का देख पा रहे है। एक व्यक्ति देख पान जो कि तबला बजा रहा है।

ब्लैक कलर का देख पा रहे है छाई कलर का देख पा रहे है ब्लू कलर का देख पा रहे है एक ग्रीन कलर का देख पा रहे है एक सिल्वर कलर का देख पा रहे है यहां सामने में --

बाउल देख पा रहे हैं जो की ब्लैक कलर का उसमें हम लोग ग्रीन कलर का चटनी देख पा रहें--

जोकि ब्लैक कलर के हैं और एक स्कूटी देख पा रहे जो कि नीला कलर का है यहां पर हम लोग एक घेरा बना हुआ देख पा रहे जोकि लोहे का बना हुआ--

गमले में हम लोग ब्लू कलर का बॉक्स देख पा रहे हैं जिसका आइडिया सिम का लोगो बना हुआ है।

बाइक और स्कूटी देख पा रहे हैं इसमें बाइक कलर में एक रेड देख पा रहे हैं एक स्कुटी कलर रेड देख पा रहे हैं दो स्कुटी का कलर --

फोटो के अंदर यहां पर हम लोग जैसा कुछ देख पा रहे है जिसके दीवाल का रंग हम लोग ब्लैक देख पा र--

एक हम लोगों को ए सी दिख रहा है जो की व्हाइट कलर का है हम लोग दो को फैन दिख पा रहे है जो की व्हाइट कलर का है यहां पे पीछे का दीवाल का कलर व्हाइट कलर लिखा हुआ यहां--

जो यहां पर है और एक दुकान का शटर देख पा रहे है में से एक ने ब्लू और व्हाइट कलर शर्ट पहना हुआ है उसका ऊपर एक बैनर देख पा --

हम लोग ब्लू कलर का एल_इ_डी लाइट जो देख पा रहे दो को फैन देख पा रहे जो की व्हाइट कलर सीलिंग फैन व्हाइट कलर का यहां पर सामने एक रेलिंग देख पा रहे वहां पर हम लोग--

इस फोटो के अंदर यहां पर बड़ा सा एक बट देख पा रहे है यहां पर बहोत बच्चे का हम लोग--

ब्लैक कलर में ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ अपना विकेट देख पा रहें हैं दोनों तरफ वहां पे एक बड़ा सा पेड़ देख पा रहे हैं उसके नीचे बहोत सारे बच्चों को बैठा हुवा देख पंच के ब्लू कलर का--